और इस बस काफी दूर-दूर तक चलती है। इसमें लोग सब यात्रा करते है और इसमें बहुत दूर-दूर तक यात्रा होती है इस बस के --